का कबड है इसमें बहुत सारी मिठाइयॉँ रखी हुई हैं।

और कुछ टग एक बाइक रखी हुई है। कुछ टूटी बाइक रखी हुई है।

पूल के ऊपर कजी छा रही है ग्रीन कलर की --

और काउन्टर के काउंटर रखा हुआ है दो चेयर रखी हुई है।